ये एक बस स्टैंड का चित्र दिखाई दे रहा है।

इस किले की दीवाले कुछ गिल परी है और ये किला देखने में ही बोहोत सुंदर लगता था। अब ये किला बोहोत ही पुराना हो चुका है और कई सा --

ये एक बस स्टैंड का दिखाई दे रहा है और इस बस स्टैंड पे कई सारी बस वगैरा खड़ी हुई है।

इस बस स्टैंड के अगल बगल कई सारे लोग भी खड़े हुए हैं और उन लोगों के अगल बगल कई सारे हरे भरे पेड़ पौधे भी हैं।

और ये लोग बैंक में बैंक में रुपये वगेरा निकालने आते हैं और इस बैंक के अगल ब --